एक फ्रिज भी देख रहा है और एक बॉक्स में बहोत सारा मीठाई भी है।

और उसमें बहोत सारा कुर्सी टेबल और एक दीवार पे कुछ एक फोटो लगा है।

टी_वी में कुछ दिखा रहा है बहुत सारा बुक वगैरह है बीच में छोटा सा--

और सामने मे बहोत सारे लोग खडे हैं लाइटिंग है।

दो फैन दिख रहा है जो बंद है।

और बिल्डिंग में बाजू में तीन चार बिल्डिंग है सामने एक रोड है रोड में एक --